यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर नीला आसमान और व्हाइट बादल देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर बिल्डिंग का कलर यहाँ पर ग्रीन कलर का है |